तथा यहां संडे संडे को भेरु जी की सेवा होती है तथा पास में बहुत ही छोटी छोटी अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं।

यह कोई कवि सम्मेलन टाइप में लग रहा है और यहां बुजुर्ग अपनी अच्छी अच्छी कविताएं शेयर कर रहे हैं यहां पास में पेड़ है जिसकी छांव भी बहोत अच्छी है।

तथा इनके कपड़े सफेद हैं और डांस स्टेज पे लाइटें भी काम है यह डांस परफॉर्मेंस के बीच की तस्वीर है।

दो लोग हैं जो शायद पूजा कर रहे हैं तथा मंदिर के बीचों बीच नंदी जी का मूर्ति लगा हुआ है।

यह बहुत ही बिजी स्ट्रीट की फोटो है जहां बहुत सारे नए नए स्टॉल्स तथा दुकानें लगी हुई हैं पास में बहुत सारी साइकिल बाइक --

यह एक कपड़े की दुकान की फोटोस है यहां बहोत सारी दुकाने हैं आस पास में।

तथा यहां एक दुकान है जो ओपन है।

घर बहुत ही छोटा है पर विंटेज तरीके से सजाया हुआ है तथा घड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है सामने वाली --